यहाँ पे छोटे-छोटे बहुत सारे खरगोस बेठे है जो सफेद कलर के है एंड नीचे ईटस लगी हुई है और उंके पास --

और धुआं सा आ रहा है इस पहाड़ पर और ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है यहां पर --

रोड़ है और रोड़ के बगल में हरी घास लगी हुई है कुछ पेड़ लगे हुए है और एक लाल कलर की दीवार की बाउंड्री बनी है पीछे कुछ मकान भी बने हुए है।

अ ये एक बस स्टॉप है जहां पे बहुत सारी बस खड़ी हुई है लाल है सफेद है एक ब्लू कलर की बस आपको यहां पास में दिख रही है ।

कुछ लाइट्स जल रही है बहुत सारे इन्सान है वहाँ पर एक इन्सना यहाँ गाड़ी पर बैठा हुआ और रात का समय है साइड में अँधेरा दिख रहा है।